कई सारे लड़के लड़कियां भी हैं और कुछ लिखा हुआ है उधर--

पेड़ पौधे हैं खुला आसमान हैं एक बंदा दिख रहा है खड़ा हुआ साफ और बहोत सारी भिड़ हो रही--

एक पिक्चर है इसमें ग्रीन हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे नीचे घास भी हल्की हल्की--

कुछ एक लड़का खड़ा हुआ कुछ टाइड भी रखे हुए हैं।

पोस्टर लगा हुआ है नीचे काउंटर --

और वो ब्लू ब्लू लाइट की रोशनी आ रही है।

एक ने चप्पल पहन रखी है रेड एक ने ब्लैक --

यह एक पिक्चर है इसमें कई बंदे खड़े हुए हैं।

ऊंचे पहाड़ दिख रहे कुछ पानी दिख रहा है कुछ पानी के अंदर पहाड़ भी है छोटे छोटे पत्थर भी हैं।

नीचे टाइल्स बिछी हुई है लाइट है वाइट कलर की दीवार पे कुछ ब्लैक कलर की भी है।

कई कट्टे रखे हुए जमीन पे कूलर के ऊपर एक सीसी रखी है उसमें पता नहीं क्या है। ऊपर फर्नीचर के ऊपर भी कुछ रखा हुआ है।

सीमेंट की सड़क है एक बाइक खड़ी हुई है कुछ स्कूटर आ रहा है।